बडका बडका और देखो पीछे पाइप लगल बा। हरियर हरियर अब पुरा सफेद रंग से बिल्डिंग बनल दिखाई देता।

ये पूरा पटरी वटरी भी अंदर अंदर बाहर बनाए खातिर।

आ उपर देख टिन उन से पूरा छवाव लबा लाइट वाइट के चका चौध में बड़का मोटा मोटा लोहा के सब सामान धइल बा अब इ सब रेलवे वाला ही जानत होइहे।